जैसा की आप देख रहे है सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और ये काफी बड़ी है और इसमें काफी सारी खिड़कि दिखाई दे रही है और यह आगे झालर से सजा हुआ है।